जमीन भी दिखाई दे रही है एक पेड़ की पत्ती भी पत्तियाँ भी दिखाई दे रही है खिड़की दिखाई दे रही--

कुछ लोग दिखाई दे रहे है कुछ लोग गाड़ी से हैं कुछ लोगो ने बैग भी लिया हुआ हैं कुछ खंभे दिखाई दे रहे पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा हैं ।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे बहोत सारा अंदर सामान रखा हुआ हैं कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे हैं झाड़ू दिखाई दे रहे हैं बाजू में लकड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है कुछ ब्लू कलर की और लाल कलर की ग्रे कलर की सफेद कलर की इत्यादि कलर की टु व्हीलर भी नज़र आ रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैं और--